यह एक मंदिर का फोटो है मंदिर प ओम नमः शिवाय लिखा गया है।

यह एक किराना दुकान का फोटो है यहां पे आलू और प्याज है।